यहां एक बहुत सुंदर सा जगह है। यहां एक तलाक भी है। आसमान का रंग--

काले रंग का पेंट पहेना हुआ है हाथ में भी कुछ है।

वहां पे एक पीली साड़ी में मैडम भी खड़ी--

एक और होटल है बगल में जहां पे पास्ट --

यह एक गौशाला है इसमें अनेक प्रकार की गाय हैं।

गैय्यों के खाने के डिब्बे का रंग नीला है एवं एक सफेद भी है।

जे_सी_बी या क्रेन है जिसका रंग पीला है वो मिट्टी को खोद रहा है मिट्टी के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे है।

इस तालाब के किनारे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही सुंदर है यहां पे इसके आसपास सब--

यह एक खाने पीने का दुकान है इस दुकान में अनेक प्रकार की मिठाइयां हैं।